और सामने की तरफ से एक दीवाल है जिस पर डेजलर लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा हैं।

उस बिल्डिंग के ऊपर लाल रंग से नगर निगम वाराणसी लिखा हुआ है।

हाथियों के ऊपर अलग-अलग रंग के और अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन भी हैं।

ऊपर की तरफ एक लाल रंग का पोस्टर है छोटा-सा जिस पर कि हैल्थ केयर लिखा हुआ है।

यह एक विद्यालय की तस्वीर है जिसके गेट पर महादेव महाविद्यालय लिखा हुआ है।

जिसका नाम अमर ज्योति के प्राइवेट लिमिटेड है और ये एक ए.सी. बस है।

जिसने की नीले और सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।

और दर बाई तरफ भगवान नटराजन भगवान शिव की एक तस्वीर भी है और कुछ बैग रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक नाई की दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कि विजय जैंट्स पार्लर अंग्रेजी मे लिखा हुआ है और बगल मे कैंची और कंघी की तस्वीर है।

यह एक एल_जी का शोरूम जैसा लग रहा है और नीचे अल्ट्रा एच डी टी_वी लिखा हुआ है।